नमस्कार दोस्तों
क्टर्टल में कंट्रोल एक्जिक्यूशन पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यटोरियल में हम सीखेंगे
व्हाइल लूप और फोर लूप इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबंटु लिनक्स ओएस वर्ज़न 1204 और क्टर्टल वर्ज़न 081 बीटा का उपयोग कर रही हूँ
हम मानते हैं कि आपको क्टर्टल के कार्य की बुनियादी जानकारी है
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट httpspoken tutorialorg देखें
एक नया क्टर्टल एप्लिकेशन खोलें
दश होम पर क्लिक करें
सर्च बार में क्टर्टल टाइप करें
आप्शन पर क्लिक करें
क्टर्टल एप्लिकेशन खुलता है
पहले मैं समझाती हूँ कि कंट्रोल एक्जिक्यूशन क्या है
कंट्रोल एक्जिक्यूशन प्रोग्राम की गति को नियंत्रित करता है
प्रोग्राम एक्जिक्यूशन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कंडिशन्स उपयोगित हैं
लूप बार बार निष्पादित कोड का एक ब्लॉक है जबतक कोई कंडिशन पूर्ण नहीं होती
उदाहरणस्वरूप व्हाइल लूप और फोर लूप
व्हाइल लूप के साथ ट्यूटोरियल शुरू करें
व्हाइल लूप में कोड की पुनरावृत्ति होती है जब तक बूलियन फलसे में नहीं बदलता है
मैं व्हाइल लूप की संरचना को समझाती हूँ
व्हाइल लूप कंडीशन डीओ सोमथिंग विथ लूप इंक्रीमेंट वेरिएबल मेरे पास टेक्स्ट एडिटर में पहले से ही कोड है
मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करके क्टर्टल एडिटर में पेस्ट करती हूँ
कृपया यहाँ ट्यूटोरियल रोकें और प्रोग्राम को अपने क्टर्टल editorमें टाइप करें
प्रोग्राम टाइप करने के बाद ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें
मैं प्रोग्राम टेक्स्ट को जूम करती हूँ यह थोड़ा धुंधला हो सकता है
अब मैं कोड समझाती हूँ
चिन्ह इसके बाद लिखी लाइन को कमेंट करता है
अर्थात यह लाइन निष्पादित नहीं होगी जब प्रोग्राम रन हो रहा हो
रिसेट कमांड टर्टल को डिफॉल्ट पोजिशन में सेट करती है
x0 एक्स से ज़ेरो तक वेरिएबल की वेल्यू इनीशियलाइज करता है
कीवर्ड मेसेज के बाद प्रोग्राम में मैसेज दोहरे उद्धरण चिन्हों में दिया गया है
मेसेज कमांड स्ट्रिंग को इनपुट के रूप में लेती है
यह स्ट्रिंग से टेक्स्ट सम्मिलित करते हुए एक पॉप अप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है
व्हाइल x30 व्हाइल कंडिशन चेक करता है
xx3 x बाय 3 वेरिएबल की वेल्यू में वृद्धि करता है
फोंटसाइज 15 प्रिंट कमांड द्वारा उपयोगित फॉन्ट साइज सेट करता है
फोंटसाइज इनपुट के रूप में संख्या लेता है पिक्सेल्स में सेट करता है
फॉरवर्ड 20 टर्टल को कैनवास पर 20 स्टेप्स आगे बढ़ने की अनुमति देता है
प्रिंट x कैनवास पर एक्स वेरिएबल की वेल्यू प्रदर्शित करता है
प्रोग्राम को रन करने के लिए रुन बटन पर क्लिक करें
एक मैसेज डायलॉग बॉक्स पॉप अप होता हैOK पर क्लिक करें
3 का गुणन 3 से 30 तक कैनवास पर प्रदर्शित होता है
टर्टल कैनवास पर 20 स्टेप्स आगे बढ़ता है
आगे फोर लूप के साथ कार्य करते हैं
फोर लूप एक काउंटिंग लूप है
फोर लूप में प्रत्येक समय कोड निष्पादित होता है
वेरिएबल्स की वेल्यू बढ़ती जाती है इसके अंतिम वेल्यू तक पहुँचने तक
अब मैंfor लूप की संरचना को समझाती हूँ
फोर वेरिएबल स्टार्ट नंबर टो इंड नंबर Statement अब मैं वर्तमान प्रोग्राम को हटाती हूँ
मैं क्लीयर कमांड टाइप करती हूँ और कैनवास को साफ करने के लिए रन करती हूँ
अब मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करके क्टर्टल एडिटर में पेस्ट करती हूँ
कृपया यहाँ ट्यूटोरियल रोकें और अपने क्टर्टल एडिटर में प्रोग्राम टाइप करें
प्रोग्राम टाइप करने के बाद ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें
मैं प्रोग्राम टेक्स्ट को जूम करती हूँयह थोड़ा धुंधला हो सकता है
अब मैं प्रोग्राम समझाती हूँ
चिन्ह इसके बाद लिखी लाइन को कमेंट करता है
रिसेट कमांड टर्टल को डिफॉल्ट पोजिशन में सेट करती है
r0 वेरिएबल की वेल्यू र से ज़ेरो तक इनीशिलाइज करता है
फोर x 1 टो 15 1 से 15 तक फोर कंडिशन चेक करता है
rxएक्स12 वेरिएबल र की वेल्यू की गणना करता है
फोंटसाइज 18 प्रिंट कमांड द्वारा उपयोगित फॉन्ट साइज सेट करता है
प्रिंट r कैनवास पर र वेरिएबल की वेन्यू प्रदर्शित करता है
फॉरवर्ड 15 टर्टल को कैनवास पर 15 स्टेप्स आगे बढ़ाता है
गो 10250 टर्टल को कैनवास के बायीं ओर से 10 पिक्सेल्स और ऊपर से 250 पिक्सेल्स आगे बढ़ाता है
टर्टल सभी प्रिंट कमांड्स को बिना किसी अंतर के प्रदर्शित करती हैं
वेट 2 कमांड टर्टल को अगली कमांड को निष्पादित करने से पहले 2 सैकंड तक इंतजार करने के लिए तैयार करती है
प्रिंट कमांड स्ट्रिंग को दोहरे उद्धरण चिन्हों में प्रदर्शित करता है और r वेरिएबल को भी प्रदर्शित करता है
अब मैं प्रोग्राम को रन करने के लिए रुन बटन पर क्लिक करती हूँ
पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं के योग की श्रृंखला और पहली प्राकृतिक संख्याओं का योग कैनवास पर प्रदर्शित होता है
टर्टल कैनवास पर 15 स्टेप्स आगे बढ़ता है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
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने व्हाइल लूप और फोर लूप का उपयोग करना सीखा
नियत कार्य के रूप में मैं चाहती हूँ कि आप व्हाइल लूप का उपयोग करके 2 का गुणन फोर लूप का उपयोग करके एक संख्या का पहाड़ा तैयार करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें
इस लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें httpspoken tutorialorgWhat इस आ स्पोकेन ट्यूटोरियल
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद